यह एक रोड है जिसमे बहुत सारी दुकानें दिख रही हैं। वहा पर गाड़िया भी खड़ी हुई है। यह पर दो बैंक है। एक एस.बी.आई. बैंक एक कोटक बैंक --

यह एक मंदिर है जिस की दिवाले बहोत हरी भरी कलर की हुई है। और उसका गेट पिक कलर का है।

एक कमरे का द्रश्य है।

और उसके साइड में में एक दरवाजा है उसकी दिवाले सफेद कलर की हैं।